सर एकर पूरा व्हाइट कलर के हेय ऐख एकर काला हेय इ हरा-भरा घास पर बैठएल हेय सर निचा क के।

बगल में बहुत सारा बाइक खड़ा है कुछ साइकिल खड़ा है कचरा हतावेल कुछ मशीन आईल गेल हाई |

यहाँ एगो सोफ़ा रखल हाई गुलदस्ता रखल है स्कैनर रखल है।

कुछ बगल में घांस रखल है सीढ़ी बनल है।

दूगो सामान रखल हई बहुत सारा पत्थर हई हरा भरा पेड़ हई दूर दूर तक --